क्योंकि इस नाम का जो-- इस नाव का जो शेप है वो बहुत ही अलग-अलग तरीके से है और बहुत ही ब्यूटीफुल है।

यह जो टीचर हैं उसे-- उसे सब लोग बहुत ज्यादा माने जाते हैं क्योंकि टीचर के ही बदौलत--

यह जो जगह है यह एक दुकान है जो बहुत ही प्यारा-सा दुकान है इस दुकान में--

यह एक सफेद कपड़ा आयरन कर रहा है और आयरन क कपड़ा अ आयरन कर के ये कपड़ा को बेचता है।

भगवान कृष्ण भगवान की सेवा करते होंगे भगवान का भोग लगाते होंगे भगवान की माला जपते होंगे।

देश को चलाने के लिए एक अच्छा नागरिक होना बहुत जरूरी है और पढ़ लिख करके ही एक अच्छा नागरिक आप बन सकते हैं।

यह जो मंदिर है यह मंदिर बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है।

यह मंदिर में हम बहुत सारे लोग आते है और इसकी भगवान की पूजा करते है भोग लगाते है।